और आदमी खड़े दिख रहे हैं।

और एक शीशे का दरवाजा बनाया हुआ हैं।

बहोत सारी लाइटिया दिख रही है।

जिसका कलर पीला सफेद और गुलाबी रंग दिख दिख रहे हैं।

यहां बिल्डिंग के बाहर छोटे छोटे दो बालकनी दिख रही हैं।

बालकनी के ऊपर एक हरा कलर का सीट डाला दिखाई दे रहा है।

यह एक कार की शोरूम दिखाई दे रही है इसका नाम ब्लू हुंडई लिखा हुआ है।

यहां पर एक लाल कलर की बिल बिल्डिंग दिख रही है।

ऊपर एक फैन दिख रहा है और एक प्रोजेक्टर टंगाया हुआ है।

सफेद कलर की बिल्डिंग के पीछे बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जिसका नाम साउथ सिटी हॉस्पिटल है।

पीछे एक आदमी अह खड़ा दिख रहा है जो लाल कलर का टी शर्ट पहने है।

यहां पे बहोत सारे बच्चे ग्राउंड के ऊपर सो के कुछ एक्सरसाइज करे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहोत सारे लोग आके पानी भर के लेके जाते हैं।

आ तीन चार पानी की केने तो दुकान के ऊपर टंगाई दिख रही है।

यह एक विद्यालय है जिसका नाम औरो मीरा इंटरनेशनल स्कूल लिखा हुआ है।

पीला कलर के बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है।

नीला कलर का एक डस्टबिन रखा हुआ है और एक कर भी दिख रही है इधर।

यहां पे बहोत सारी सीढ़ी के ऊपर बहोत सारे लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक ऑफिस है। यहां पे बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई है।

पीछे बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं।

पीछे एक सफेद कलर की बहौत सारी बड़ी बिल्डिंग दिख रही हैं।

यहां पे एक सफेद कलर का काउंटर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक ट्रे और दो कैटल दिख रही है।

साइड में एक ट्राली दिख रही है।

और ओ एक आदमी के ऊपर कुछ नीला कलर का कपड़ा लगाए दिख रहा है।

इसी के ऊपर एक टी_वी लगाए दिख रही है।

विद्यालय के अंदर बहुत सारा खुला पड़ा मैदान दिख रहा है।

अंदर बच्चे मैदान में कुछ खेल रहे हैं।

यहां पे पीछे एक फ्रिज रखा हुआ है।

इसका नाम कोटास काफी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

हरा कलर का पाइप में से पानी बाहर आ रहा है और वो पानी पूरे पौधे में ऊपर डाल रही है।

छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं पीछे बड़े बड़े दो पेड़ भी दिख रहे हैं।

यहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही--

ऊपर एक आक आसमान दिख रहा है।

ऊपर सीलिंग के ऊपर बहोत सारे लाइटें और ए_सी के डक्ट दिखाई दे रहे है।

यहां पे बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

यहां पे एक कांच की दीवार अ बनाई हुई है।

हरा कलर का मैट डाला हुआ है और काली कलर की कुर्सियां मैट के ऊपर डाला दिखाई दे रहा हैं।

यहां पे ये दो रस्ते दिख रहे हैं।

यहां पे बहोत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बस स्टैंड जैसे दिख रहा है।

यहां पे दो सफेद कलर की बसें खड़ी दिखाई दे रही है।

यहां पे कुछ आदमी खड़े दिखाई दे रहे हैं।

अ साइड में एक दुकान दिख रही है जहां पे कुछ चिप्स बाहर टंगाए हुए दिख रहे हैं।

हां यहां पे नीचे एक बेसमेंट दिख रहा है।

बाजू में खाली साइट दिख रही है।

एक सड़क भी दिख रही है।

यह सायकल में एक काला कलर का हैंडल भी है।

यहां पे कुछ लोग भी दिख रहे है।

यहां पे बहोत सारे रंग बिरेले कपड़े रखे दिख रहे हैं।

बाहर एक रस्ता दिख रहा है जिसके ऊपर एक सफेद कलर की गाड़ी पार्क की हुई दिखाई दे रही है।

ये दुकान के बाहर बहुत सारे लटकाए हुए दिख रहे हैं।

यहां पे एक सड़क के ऊपर नीली कलर की कार पार्क की हुई दिख रही हैं।

ऊपर एक ए_सी का डेक दिख रहा है।

यहां पे एक सड़क दिख रही हैं।